यहाँ एक घर दिखाई दे रहा है फोल्डर लगा हुआ है। गेट लगे हैं साइड में दुकान नज़र आ रही है। इसमें कुकर दिखाई दे रहा है।

फैन दिखाई दे रहा है। बहुत सारे डब्बे दिखाई दे रहे हैं। दुकान के अंदर आदमी दिखाई दे रहा है। दोनों दुकान के अंदर आदमी एक साइकिल दिखाई दे रही है।

बाहर में घास दिखाई दे रहें हैं। मिट्टियाँ दिखाई दे रही है। कच्ची सड़क दिखाई दे रहा --